पौधों के गमले रखे हुए हैं और बहुत सी लाइट लगी हुई है।

ता में एक बुद्ध भगवान की मूर्ति लगी है।

छोटे बड़े और पत्ते के टुकड़े हैं।

गेट दिख रही है बड़ा सा शटर है।

ग्राउंड में कुछ लोग खड़े हैं।

बने हुए हैं और बहुत सारे--

दरवाज़ा बना हुआ है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं।

और कुछ लोग कतर मकबरे से--

और एक साइड में बड़ा सा लोहे का गेट दिख रहा है।

ऊपर हॉस्पिटल दिख रहा है। ऊपर रेड कलर से--

एक आदमी बैठा हुआ है डॉक्टर लग रहा है वो।

बहुत सारी राखियाँ पैकेट में हैं टंगी हैं।

बोतलें और रखा हुआ है।

यहाँ पर बड़ा सा एक हॉल है।

यहां पर सामने बड़ा सा गेट है।

बॉटल रखी हुई और--

मॉल दिख रहा है और बहुत सारे--

और बड़ी-बड़ी कार है लगी हुई।

और दुकान में ऊपर बोर्ड लगा हुआ है।

अमूल आइसक्रीम का और आइसक्रीम का --

बाहर डीये लगे हुए हैं।

यहाँ पर सामने एक बड़ा सा--

सभी अलग अलग प्रकार के मछलियां रखी हुई है।

और मछली खरीद रहे हैं पीछे पेट दिख रहा ए ।

और कनात दिख रही है नीचे ईटे बिछी हुई है।

ब्लू और व्हाइट कलर का फलूट लगा हुआ है।

गाड़ियाँ खड़ी हैं ऊपर आसमान दिख रहा है।